चारो तरफ पेड़ हैं | यहाँ पानी दिखाई दे रहा है बना हुआ घेरे से यहाँ पत्थर है पेड़-पौधे भी है बहुत सुन्दर है ।

और उधर भी साइड में घर है और बहुत सुन्दर यहाँ नारियल के --

जानवर भी है गाय है भैस है उधर देख सकते हैं ।

एक स्विमिंग पूल है।

और ये बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है हरे-हरे घास पौधे-पेड़ हैं ये सुन्दर दिखाई देते है ।

एक नीचे बैठे हैं एक ऊपर है धागे बंधे हुए हैं ।

मार्केट है यह दुकान है ।